टेबल दोनों साथ में रहते हैंस्टूडेंट बैठते हैं और दिखाई दे रहे हैं। एक बॉटल भी रखी हुई है।

बहुत सारे आदमी अंदर दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग खड़े हैं। कुछ लोग बैठे हैं और गेट में बाहर बगल से एक मोर का पुतला दिखाई दे रहा है।

यह शायद बाग है। छोटे-छोटे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं पुष्पों के। एक लेडीज है जो --

महत्ता हरिहरदास उच्च विद्यालय दस टू और काफी लोग बोर्ड लिए दो खड़े हैं। तीन लोग बैठे हैं। कुछ लेडीजे खड़ी हैं। कुछ जेंट्स --

ये सैलून की दुकान है। जिसमे एक व्यक्ति की दाढ़ी बनाई जा रही है। एक व्यक्ति की दाढ़ी बन चुकी है। दो नाई हैं।

व्यायाम कर रहे हैं। छोटे-छोटे काफी बच्चे और बच्चियाॅं और काफी बड़े जेंट्स भी व्यायाम कर रहे हैं और लेडीजे भी व्यायाम कर रहीं हैं। एक जेट्स व्हाइट कलर का शर्ट ब्लू कलर का पैंट पहने हुए है।

एक चबूतरा बना हुआ है जिस चबूतरे मे एक मूर्ति बैठी हुई है उस चबूतरे में लिखा है नमो बुद्धाय जय भीम जय भारत।

ये विद्यालय है। विद्यालय में स्टूडेंट कुछ बच्चियां हैं। कुछ बच्चे हैं जो शायद एग्जाम दे रहे हैं।

ये रोड दिखाई दे रही है। रोड के दोनों तरफ रेलिंग दिखाई दे रही है। एक सी .एन .जी. दिखाई दे रही हैं उस सी.एन.जी. को खड़ी करा कर गेट खुला हुआ हैं और तीन चार लोग खड़े हुए हैं।

और अंदर बच्चियाँ दिखाई दे रही हैं। बाहर लेडिज दिखाई दे रही हैं।